यहाँ पर एक मंदिर बना हुआ है मंदिर पे तीन मूर्ति लगी हुई है।

यहाँ पर एक सड़क बनी हुई है। सड़क पे बिल्डिंग बनी हुई है।

बिरयानी के चावल अलग-अलग रंग के हैं। यहाँ पर एक गिलास रखा हुआ है ऊपर एक पंखा लगा हुआ है। यहाँ पर लोग --